ये मार्केट बहुत ही अच्छा है मैं भी इसमें गया हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिलते है यहाँ खाने पीने सब चीजें मिलता है यहाँ पे ।

सामने बहुत बड़ी घास दिख रही है घास के नीचे बहुत सारी घर है और होटल वगयरा है और दो तीन टेम्पो| --

बहोत ही अच्छे तरह से ये लोग बोट चला रहे हैं और फुल मजा कर रहे हैं। बोट भी बहोत अच्छा है। नदी बहोत अच्छी लग रही है। बहोत गेहरा भी लग रहा है नदी।

पीछे तीन महिलाएँ झील को पार कर रही है और ये आदमी जो पत्थर पे बैठा हुआ है फोटो खिंचवा रहा --

यहाँ पे पूल के नीचे गंगा नदी में लोग शायद स्नान करने आए हैं। बहोत सारे लोग हैं श्रद्धालु हैं और यहाँ पे सभी लोग नहाने के लिए आये हैं।

कैफ़े है और बगल में एक बाइक से एक आदमी भी खड़े हुए है।

ये गंगा नदी है गंगा नदी के ऊपर में पूल बना हुआ है और यहाँ पर छठ पूजा हो रहा है शायद और बहुत सारे यहां पर श्रद्धालु लोग पूजा कर रहे है बहुत सारे लोग भी आए है पूजा करने यहाँ पे।

यहाँ एक छोटा-सा तालाब में है जहाँ पर छठ पूजा किया जाता है और बहुत सारी महिलाए यहाँ पे छठ पूजा कर रही है।